और ये एक बहुत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे है बहुत सारे झाड़ दिखाई दे रहे है और एक छोटा सा बीच और उसके बीच में टेबुल सी है बैठने के लिए --

और ये बड़ा सा फंक्शन हॉल दिखाई दे रहा है और उसे नाईटोल से और फूलों से सजाया गया है देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है।

और थोड़े लोग खड़े होकर फोटो भी खिचवा रहे हो ये देख रहे है हो बहुत ही सूंदर दिख रहा है।

और एक घड़ी-घड़ी दिखाई दे रही है पंखा भी दिखाई दे रहा है और बलून भी दिखाई दे रहा है

और बाजु में ही एक चम्चा और एक फॉक रखा है और आगे ही एक छोटी सी कटोरी में कुछ खाने के जैसा रखा है।